तीन से चार लोग काम कर रहे हैं।

जो एक बुक को पकड़ के--

और यहां लोहे के गेट भी हैं और यहां--